यहां पर एक फोर व्हीलर भी है जिसका कलर व्हाइट है यहां आपको एक बास भी दिखाई दे रहा होगा।

यहां नीचे एक रेड कलर की कारपेट भी बिछी हुई है।

सभी बच्चों ने अपने नीचे मैट बिछाई हुई है।

यहां मुझे एक पंखा भी लगा हुआ देखने को मिला।

यहां मुझे टमाटर और हरी मिर्ची प्याज और यहां पर एक थैला भी रखा दिखाई दे रहा है।